यह एक छोटा सा क्लिनिक है इस क्लिनिक का नाम है सिमरन।

यहाँ पर सांई बाबा का मंदिर है और यहाँ पे बहोत सारे लोग पूजा करने के लिए आते हैं।

और इधर दो आदमी खड़े ह हुए हैं।

यह एक कॉलेज है और यह कॉलेज बहुत ही बड़ा है कॉलेज के किनारे-किनारे बहुत सारे पेड़ लगाया गए है और कॉलेज के बाहर बहुत सारी गाड़िया खड़ी है और यह कॉलेज बहुत ही फेमस है और यहाँ पे बहुत बच्चे दूर-दूर से पढ़ने के लिए आते हैं।